ये रोड पे है जो बना हुआ ये ईमारत दिख रही साम--

और बाहर पार्किंग बनी हुई है पार्किंग में दो चार गाड़ियां खड़ी हमें दिख रही है जैसे एक्टिवा वगैरा।

और सामने बहुत बड़ा सा माउंटन दिखाई दे रहा है।

और एक साथ में साइकल व से आने आता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो दो फीमेल्स है उनके सिर पे कुछ रखा गया है टोकरी टाइप --

एक ऑफिस एरिया लग रहा है ऑफिस एरिया में क्या है कि एक केबिन टाइप रूम बना हुआ है और टेबल रखे हुए हैं दो टेबल दिखाई दे रहे हैं एक है ब्लैक कलर का एक है वाइट कलर का।

और अंदर कांच का जो ये फ्रिज है और फ्रिज बहुत सारा फ्रिज में बहुत सारा मिठाई नजर आ रहा है मुझे।

ये एक ऑफिस है ऑफिस में बहोत सारे टेबल चेयर्स रखी हुई हैं और कु--

और ये जो अअ नीचे शीट्स बिछी है काफी सुंदर शीट्स है।

ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये किसी शायद मस्जिद के बाहर की है जहां बहोत सारे मुसलमान व्यक्ति बैठे हुए हैं टोपी लगाकर।

जिनकी पगड़ी है येलो कलर की और सामने उनके आगे दो तीन लोग और खड़े हैं।

और ये पूरा ग्राउंड टाइप एरिया भी खाली है फिलहाल जो भी यहां पे इमारत शायद बनने वाली है इसलिए यहां पे ऐसा करा जा रहा है।

ये एक लैब रगल लग रहा है इस लैब में एक लेडिस बैठी हुई हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है चेयर पे बैठ के ये ना कुछ--

और काफी हाइट वाली गाड़ी लग रही--